यहाँ पर अभी दूल्हा दुल्हन नहीं दिखाई दे रहे है अभी सब लोग ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का वेट कर रहे है।

शॉप है जिसपर खेल खिलोने रखे हुए हैं और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी डॉल रखी हुई है।

ये आज कल के बच्चो को डॉल से खेलने का बहुत शौक रेहता है और बहुत से बच्चे ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे --

पर बहुत ही सुंदर दिख रही है हम्म ऐसा लग रहा है इसको देख कर यहाँ से कोई बहुत अच्छे लोग रहेते होंगे इस बिल्डिंग में।

ये किसी का घर है और ये घर बहुत ही सुंदर है क्यूंकि इनमें आस पास पार्क भी बनवाया है और पार्क में मतलब सेम ही पेड़ लगवाये हैं आस पास और ये घर बहुत ही बड़ा है।